यहाँ पर बहुत पुराना बिल्डिंग्स बनी हुई दिखाई दे रही है जो राजाओं के जमाने का के जैसा है उसके अंदर घूमने के लिए आते हैं ।

वहाँ पर जाने के लिए एक रास्ता दिखाई दे रही है और खंबा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है विद्युत वाला बिजली का तार भी दिखाई दे रहा है और कुछ बल्ब भी लगे हुए है रंग-बिरंगे बल्ब जल रहे है और एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर पार्क में कुछ खिलोने वाली चीज़े रखी हुई हैं जिससे--